किला कितना अच्छा लग रहा देखने में देखो इसकी इसका कलर भी अच्छा हैं और यहाँ देखो कुछ पेड़ पौधे भी लगे हुए है कितने सारे और देखिये और उसकी वहाँ भी कुछ होगा इतना बड़ा होगा जो की आपको ये कहा का बलरामपुर का किला--

तो क्या आपको दिखा। यहाँ पर कुछ पानी भरा पानी भरा हुआ है। और वहाँ देखिये कुछ दीवाल विवाल वगैरह भी है। वहाँ पर कुछ घर भी बने हुए है जो की आपको दिख रहे है। और एक ये बा यहाँ पर पानी वानी कितना सारा भरा हुआ है।

यहाँ देखिये कहाँ बलरामपुर का है जो आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर देखिये कितने सारे पेड़-पेड़ पौधे लगे हुए है जोकि आपको देखने को मिल रहा है वो देखिये कुछ पानी-वानी भरा हुआ है और कितना घर भी बने हुए है यहाँ पर बिल्डिंग वगैरह और देखिये यहाँ पर कुछ रोड भी है जोकि आपको देखने को मिल रहा हैं।

ऊपर देखिये मूर्ति कितनी मस्त लग रही है वाइट कलर की कहाँ बलरामपुर की मूर्ति है जोकि आपको देखने को मिल रही है ये और यहाँ देखिये कुछ पानी वगैरह भी है जोकि आपको देखने को मिल रहा है और कितनी मस्त चीज़ है शटर गयी है यहाँ से --

ये कितना मस्त लग रहा है ये किला देखने में जोकि आपको देखने को मिल रहा है और देखिये यहाँ पर कुछ सीढ़ियां भी दी गयी हुई है की जाने के लिए ऐ गो वहाँ पर कोई जैन्ट्स खड़ा हुआ है जोकि वहाँ से कुछ देख रहा है ये जिसको पूरे किले को देख रहा है कि कैसा हैं।

यहाँ पर देखिए यहाँ पर कुछ अम्मम्म यहाँ पर कुछ मंदिर है जोकि आपको देखने मिल रहा है उसमें कलर भी कितना मस्त लग रहा है देखने में जोकि आपको नज़ारा ऐसा कही नहीं मिलेगा और देखिये--

यहाँ पर देखिये क्या है के - केंद्रीय का- कार्यालय लिखा हुआ बोर्ड पर है मशीन वगेरा लगी हुई है पेड़ पौधे भी है यहाँ पर ।